तुलसी का गमला लग रहा है जो लाल रंग लाल रंग--

पीछे एक साइड में हरा हरा पेड़ है पेड़ के आगे भी छोटी छोटी फोटो लगी हुई हैं।

हरा घास उगा हुआ है उसके पीछे भी थोड़ा थोड़ा पानी लग रहा है।

पिंक कलर का है ऊपर छत पर काफी चा पांच छह पंखे लगे हुए हैं खिड़कियों से बाहर की रोशनी अंदर आ रही है।

कोर्ट कोर्ट में लग रहा है कुर्सियाँ लगी हुई हैं अपने-अपने केबिन बने हुए है कुर्सियाँ सब खाली पड़ी हैं कोई भी वर्क नहीं कर रहा है।